हमें एक रथ दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ मशीनो वगैरा वर्क और बैकअप दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ हो रै --